मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है जगहजगह मेले लगते हैं धार्मिक पूजापाठ होते हैं
कोरोना के इस संकट काल में लोगों में उमंग तो है उत्साह भी है लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है
बहुत एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है
लोग अपना ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं
देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है
गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इकोफ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है
साथियो हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आयेगी हमारे पर्व और पर्यावरण
इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है
जहां एक ओर हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का सन्देश छिपा होता है तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिये ही मनाए जाते हैं
जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारु आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं
प्रकृति की रक्षा के लिये बरना को थारु समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है
इस दौरान न कोई गाँव में आता है न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आनेजाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़पौधों को नुकसान हो सकता है
बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाईबहन पूजापाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परम्परा के गीतसंगीत नृत्य जमकर के उसके कार्यक्रम भी होते हैं
इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है
ये पर्व चिनगम महीने में आता है
इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं अपने घरों को सजाते हैं पूक्क्लम बनाते हैं ओनमसादिया का आनंद लेते हैं तरहतरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं
ओणम की धूम तो आज दूरसुदूर विदेशों तक पहुँची हुई है
अमेरिका हो यूरोप हो या खाड़ी देश हों ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा
ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है
ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है
ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है
किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाज चलता है
हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंगबिरंगे बनते हैं
हमारे अन्नदाता को किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को तो वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है
ऋगवेद में मन्त्र है
अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणाम पतये नमः
अर्थात अन्नदाता को नमन है किसान को नमन है
हमारे किसानों ने कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है
हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा हुई है
धान की रुपाई इस बार लगभग 10 प्रतिशत दालें लगभग 5 प्रतिशत मोटे अनाजCoarse सीरियल्स लगभग 3 प्रतिशत आयलसीड्स लगभग 13 प्रतिशत कपास लगभग 3 प्रतिशत ज्यादा बोई गई है
मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है लेकिन इसके साथसाथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लम्बे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटेछोटे बालमित्रों का समय कैसे बीतता होगा
और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिये क्या कर सकते हैं इस पर मंथन किया चिंतन किया
मेरे लिए ये बहुत सुखद था लाभकारी भी था क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का नया सीखने का अवसर बन गया
हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने
हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नएनए टॉयज़ कैसे मिलें भारत तोय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने
वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के मातापिता से क्षमा माँगता हूँ क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नयीनयी डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा
खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं
खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं
मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के सम्बन्ध में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट तोय वो होता है जो इनकंप्लीट हो
ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेलखेल में उसे पूरा करें
गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे
लेकिन एक दिन बचपन के उन मौजमस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया
हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा विदेशी खिलौना लेकर आ गया
खिलौने को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया
हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा खिलौना बन गया
जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था सबके साथ रहता था घुलमिल जाता था खेल में डूब जाता था वो अब दूर रहने लगा
एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया
महंगे खिलौने में बनाने के लिये भी कुछ नहीं था सीखने के लिये भी कुछ नहीं था
यानी कि एक आकर्षक खिलौने ने एक उत्कृष्ठ बच्चे को कहीं दबा दिया छिपा दिया मुरझा दिया
इस खिलौने ने धन का सम्पत्ति का जरा बड़प्पन का प्रदर्शन कर लिया लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और संवरने से रोक दिया
खिलौना तो आ गया पर खेल ख़त्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया
इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाये उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाए
बच्चों के जीवन के अलगअलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है
खेलखेल में सीखना खिलौने बनाना सीखना खिलौने जहां बनते हैं वहाँ की विसित करना इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है
हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है
कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं
भारत के कुछ क्षेत्र तोय क्लस्टर्स यानी खिलौनों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं
जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली तमिलनाडु में तंजौर असम में धुबरी उत्तर प्रदेश का वाराणसी कई ऐसे स्थान हैं कई नाम गिना सकते हैं
आपको ये जानकार आश्चर्य होगा कि ग्लोबल तोय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है
7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है
अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो परम्परा हो विविधता हो युवा आबादी हो क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या जी नहीं ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा
देखिये साथियो तोय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है
गृह उद्योग हो छोटे और लघु उद्योग हो एमएसएमईज हों इसके साथसाथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं
इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी
अब जैसे आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू हैं
उनके गांव के एतिकोप्पका टॉयज़ एक समय में बहुत प्रचलित थे
इनकी खासियत ये थी कि ये खिलौने लकड़ी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था
ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी
सीवी राजू ने एतिकोप्पका टॉयज़ के लिये अब अपने गाँव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया है
बेहतरीन क्वालिटी के एतिकोप्पका टॉयज़ बनाकर सीवी राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है
खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी सँवार सकते हैं
मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ टीम यूपी फोर टॉयज़ आइए मिलकर खिलौने बनाएं
अब सभी के लिये लोकल खिलौनों के लिये वोकल होने का समय है
आइए हम अपने युवाओं के लिये कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं
खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी खिलखिलाए भी
हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हों
इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है
ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं
लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती हैं
हमारे देश में इतने आईडीईएएस हैं इतने कन्सेप्ट्स हैं बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है
क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ आप भारत में भी गेम्स बनाइये और भारत के भी गेम्स बनाइये
कहा भी जाता है लेट थे गेम्स बेगिन तो चलो खेल शुरू करते हैं
आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हों टॉयज़ का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है
जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है
आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है
असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया थाउसे अब आत्मनिर्भर भारत के वट वृक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दायित्व है
मेरे प्यारे देशवासियो
भारतीयों के इनोवेशन और सोल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है और जब समर्पण भाव हो संवेदना हो तो ये शक्ति असीम बन जाती है
इस महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक अप्प इनोवेशन चैलेंज रखा गया
इस आत्मनिर्भर भारत अप्प इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़चढ़कर के हिस्सा लिया
करीब 7 हजार एंट्रीज आईं उसमें भी करीबकरीब दो तिहाई एप्स टियर त्वो और टियर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए हैं
ये आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है
आत्मनिर्भर अप्प इनोवेशन चैलेंज के रिजल्ट्स देखकर आप ज़रूर प्रभावित होंगे
काफी जाँचपरख के बाद अलगअलग कैटेगरी में लगभग दो दर्जन एप्स को अवार्ड भी दिए गये हैं
आप जरुर इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुडें
हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जायें
इनमें एक अप्प है कुटुकी किड्स लर्निंग अप्प ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव अप्प है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बातबात में ही बच्चे माथ साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं
इसमें एक्टिविटीज भी हैं खेल भी हैं
इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लैटफार्म का भी अप्प है
इसका नाम है कू क ओओ कू
इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं इंटरैक्ट कर सकते हैं
इसी तरह चिंगारी अप्प भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है
एक अप्प है एएसके सरकार
इसमें चट बोट के जरिए आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से
ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है
एक और अप्प है स्टेप सेट गो
ये फिटनेस अप्प है
आप कितना चले कितनी कैलोरीज बर्न की ये सारा हिसाब ये अप्प रखता है और आपको फिट रहने के लिये मोटीवेट भी करता है
मैंने ये कुछ ही उदाहरण दिये हैं
कई और एप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है
कई बिजनेस एप्स हैं गेम्स के अप्प है जैसे इस इक्वाल्टो बुक्स एक्सपेंस ज़ोहो जोहो वर्कप्लेस एफटीसी टैलेंट आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए आपको बहुत जानकारी मिलेगी
आप भी आगे आएं कुछ इनोवेट करें कुछ इम्प्लीमेंट करें
आपके प्रयास आज के छोटेछोटे स्टार्टअप्स कल बड़ीबड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे
और आप ये मत भूलिये कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ीबड़ी कम्पनियाँ नज़र आती हैं ना ये भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी
प्रिय देशवासियो
हमारे यहाँ के बच्चे हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं अपना सामर्थ्य दिखा पाएं इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रीशन की भी होती है पोषण की भी होती है
पूरे देश में सितम्बर महीने को पोषण माह न्यूट्रीशन मोंथ के रूप में मनाया जाएगा
नेशन और न्यूट्रीशन का बहुत गहरा सम्बन्ध होता है
हमारे यहाँ एक कहावत है यथा अन्नम तथा मन्न्म
यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है
बच्चों के पोषण के लिये भी उतना ही जरुरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले और पोषण या न्यूट्रीशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं कितना खा रहे हैं कितनी बार खा रहे हैं
इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरुरी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं
आपको इरोन कैल्शियम मिल रहे हैं या नहीं सोडियम मिल रहा है या नहीं विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं ये सब न्यूट्रीशन के बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं
न्यूट्रीशन के इस आन्दोलन में पियोपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरुरी है
जनभागीदारी ही इसको सफल करती है
पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गये हैं
खासकर हमारे गाँवों में इसे जनभागीदारी से जनआन्दोलन बनाया जा रहा है
पोषण सप्ताह हो पोषण माह हो इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है
स्कूलों को जोड़ा गया है
बच्चों के लिये प्रतियोगिताएं हों उनमें अवेयरनेस बढ़े इसके लिये भी लगातार प्रयास जारी हैं
जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है उसी तरह न्यूट्रीशन मॉनिटर भी हो रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रीशन कार्ड भी बने इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है
पोषण माह न्यूट्रीशन मोंथ के दौरान माइगोव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रीशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कॉम्पिटिशन भी होगा
आप ख़ुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटीवेट करें
अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल के स्टेच्यू ओएफ यूनिटी जाने का अवसर मिला होगा और कोविड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का अवसर मिलेगा तो वहां एक यूनिक प्रकार का न्यूट्रीशन पार्क बनाया गया है
खेलखेल में ही न्यूट्रीशन की शिक्षा आनंदप्रमोद के साथ वहां जरुर देख सकते हैं
भारत एक विशाल देश है खानपान में ढेर सारी विविधता है
हमारे देश में छह अलगअलग ऋतुयें होती हैं अलगअलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलगअलग चीजें पैदा होती हैं
इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र के मौसम वहाँ के स्थानीय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न फल सब्जियों के अनुसार एक पोषक न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्लान बने
अब जैसे मिलेट्स मोटे अनाज रागी है ज्वार है ये बहुत उपयोगी पोषक आहार हैं
एक भारतीय कृषि कोष तैयार किया जा रहा है इसमें हर एक जिले में क्याक्या फसल होती है उनकी न्यूट्रीशन वैल्यू कितनी है इसकी पूरी जानकारी होगी
ये आप सबके लिए बहुत बड़े काम का कोष हो सकता है
आइये पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें
प्रिय देशवासियो
बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया
ये खबर है हमारे सुरक्षाबलों के दो जांबाज किरदारों की
एक है सोफी और दूसरी विदा
सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान हैं डॉग्स हैं और उन्हें चीफ ओएफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स से सम्मानित किया गया है
सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है
हमारी सेनाओं में हमारे सुरक्षाबलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान है डॉग्स हैं जो देश के लिये जीते हैं और देश के लिये अपना बलिदान भी देते हैं
कितने ही बम धमाकों को कितनी ही आंतकी साजिशों को रोकने में ऐसे डॉग्स ने बहुत अहम् भूमिका निभाई है
कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला
कई किस्से भी सुने
एक डॉग बलराम ने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोलाबारूद खोज निकाला था
2002 में डॉग भावना ने ईईडी खोजा था
ईईडी निकालने के दौरान आंतकियों ने विस्फोट कर दिया और श्वान शहीद हो गये
दोतीन वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी ईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था
कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आख़िरी विदाई दे रही थी
रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी
डॉग्स की डिसास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं
भारत में तो नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है
कहीं भूकंप आने पर ईमारत गिरने पर मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं
मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत सक्षम होते हैं
इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड हैं हिमाचली हाउंड है ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं
राजापलायम कन्नी चिप्पीपराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं
इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढ़ले भी होते हैं
अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉग्स को अपने सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही हैं
पिछले कुछ समय में आर्मी सीआईएसएफ एनएसजी ने मुधोल हाउंड डॉग्स को ट्रेन्ड करके डॉग स्क्वाड में शामिल किया है सीआरपीएफ ने कोम्बाई डॉग्स को शामिल किया है
इंडियन काउंसिल ओएफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है
मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके
आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए इनके बारे में जानिए आप इनकी खूबसूरती इनकी क्वालिटीज देखकर हैरान हो जाएंगे
अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें आप जरुर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएँ
आत्मनिर्भर भारत जब जनमन का मन्त्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है
मेरे प्रिय देशवासियो
कुछ दिनों बाद पांच सितम्बर को हम शिक्षक दिवस मनायेगें
हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को अपनी जीवन यात्रा को देखते है तो हमें अपने किसी न किसी शिक्षक की याद अवश्य आती है
तेज़ी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती लगती है
मुझे ख़ुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है
पढाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो नए तरीकों को कैसे अपनाएँ छात्रों को मदद कैसे करें यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है
आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं
शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं
मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुचाने में अहम भूमिका निभायेंगे
और विशेषकर मेरे शिक्षक साथियो वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनायेगा
स्वतंत्रता के पहले अनेक वर्षों तक हमारे देश में आज़ादी की जंग उसका एक लम्बा इतिहास रहा है
इस दौरान देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ आजादी के मतवालों ने अपने प्राण न्योछावर न किये हों अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो
यह बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी हमारे विद्यार्थी आज़ादी की जंग हमारे देश के नायकों से परिचित रहे उसे उतना ही महसूस करे
अपने जिले से अपने क्षेत्र में आज़ादी के आन्दोलन के समय क्या हुआ कैसे हुआ कौन शहीद हुआ कौन कितने समय तक देश के लिए ज़ेल में रहा
यह बातें हमारे विद्यार्थी जानेंगे तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिये बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे शिक्षकों का बड़ा दायित्व है
जैसे आप जिस जिले में हैं वहाँ शताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला उन आजादियों के जंग में वहाँ कोई घटनाएं घटी हैं क्या इसे लेकर विद्यार्थियों से रिसर्च करवाई जा सकती है
उसे स्कूल के हस्तलिखित अंक के रूप में तैयार किया जा सकता है आप के शहर में स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ा कोई स्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहाँ ले जा सकते हैं
किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आज़ादी के 75 नायकों पर कवितायें लिखेंगे नाट्य कथाएँ लिखेंगे
आप के प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हीरोज को सामने लायेंगे जो देश के लिए जिये जो देश के लिए खप गए जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए ऐसे महान व्यक्तित्वों को अगर हम सामने लायेंगे आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और जब 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे शिक्षक साथियों से जरूर आग्रह करूँगा कि वे इसके लिए एक माहोल बनाएं सब को जोड़ें और सब मिल करके जुट जाएँ
मेरे प्रिय देशवासियो
देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है इसकी सफलता सुखद तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो इस यात्रा का यात्री हो इस पथ का पथिक हो इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्थ रहे सुखी रहे और हम मिलकर के कोरोना को पूरी तरह से हराएं
कोरोना तभी हारेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे जब आप दो गज की दूरी मास्क जरुरी इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे आप सब स्वस्थ रहिये सुखी रहिये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद